दो लोग कुछ कर रहे हो पेड़ के साथ में एक आदमी उस पेड़ की पत्तियों से कुछ निकाल रहा है उसके हाथ में कुछ है वो उसमें डाल रहा है।

पीछे सब लोग खड़े होके उस डेकोरेट करने वाले को देख रहे--